और उस पीले रंग के बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है कुछ बच्चें कुर्सियों पे बैठे हैं तो कुछ मेज़ पे बैठे हुए है।

यह एक जमीन है। जो की खाली पड़ी हुई है। यहाँ कुछ चारे परे हुए है। कुछ हरी घासे पड़ी हुई है।

वो दो औरतें बैठी हुई हैं एक औरत ने साड़ी पहनी है एक ने --

चिट लगा हुआ है। जिसपे नो मास्क नो इंट्री लिखा हुआ है। ये शीशे का पूरा गेट है।